और इसके पीछे में एक इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट का अंदर दिखाई दे रही है।

फ्लावर पोट्स तब भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमको एक लड़का दिखाई दे रहे हैं और एक--

ऊपर में गवर्नमेंट कॉलेज दोईमुख लिखा हुआ है।

ये एक दुकान का अंदर दिखा रही है।

विंडो में पर्पल कलर का परदा लगाया हुआ है।

टेबल में टमाटर सॉस का बोतल रेड कलर का रखा हुआ है।

नदी के अंधेरे में मुझे इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा है जिसमें वायर टांगा--

इस फोटो में मुझे के_एफ_सी रेस्टोरेंट करके क्लियर से लिखा हुआ दिखाई दे रही है।

दो ठो स्तूप छोटा छोटा दिखाई दे रहा है बहुत सारा। उसके बाद फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है हमको इधर।

मुझे यहां लड़कियों के ही कपड़ा दिखाई दे रही है।

बीच में एक जंगल जिम बनाया हुआ है।

मुझे आसपास में क्रिसमस ट्री लोग भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे बाहर पे एक दरवाजा में वाइट कलर का पर्दा दिखाई दे रही है।

आसपास में मुझे वेजिटेबल्स उगाया हुआ भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर मे हमको लकड़ी से बनाया हुआ एक सोफा सेट दिखाई दे रहा है और छोटा छोटा सीट भी दिखाई दे रहा है उसके बा--

सामने में बहोत बहुत सारा छोटा छोटा जंगल दिखाई दे रहे हैं और दो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं हमको।